पर्स है गिफ्ट है।

और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

एक बड़ा कंप्यूटर कैफ है।

यहां पर ढेर सारा कंप्यूटर है।

और मगरमच्छ के बगल में घास।

ऊपर में फैन पंखा है।

बाउंड्री के पास में पेड़ पौधा है।

ईसा मसीह के बगल में गुलगस्ता --

और वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

यहां पे अह मछली के खाने पीने का सामान मिलता है।

रेड कलर का आठ टेबल है।

बगल में दुकान है दुकान के बगल में बहुत सारा पेड़ है।

एक बड़ा सा पार्क है।

एक बड़ा सा मार्केट है जहां फर्नीचर का दुकान है।

ट्रक है उसमें कुछ सामान लादा हुआ है।